अच्छा आ उम चेयर्स लगी हुई है ये रेस्टोरेंट है यहाँ वैकन्सी होटल है ये--

आप देख सकते है इस पिक्चर मे हमे ये नजर आ रहा है की ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है।

आप देख सकते है इस पिक्चर मे हम बोल सकते है की इसमे बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है जहां पर हमे देखने को मिल रहा है एक बड़ा सा दर्या।

रेलवे स्टेट लेवल इग्ज़ैम यहाँ पर कुछ लिखा हुआ--

इस पिक्चर मे हमे दिखाई दे रहा है की इसमे--

कुछ रेड चेयर्स पे बैठे है कुछ ग्रीन कलर के चेयर्स पे बैठे है यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाइटिंग सिस्टम है।

पूरी लेडी है जिसको ग्रीन कलर की साडी पेहन के है--

आप देख सकते है ये बिल्डिंग जहां पर लिखे है द हाइवे रेस्टोरेंट अँड ब्केट हॉल्स जहां पर बाइक्स है खड़ा--

ये बिल्डिंग देख लीजिए आप कितनी प्यारी बिल्डिंग है एवर ग्रीन देख लीजिए।

एवर ग्रीन्स है साइड मे आप देख सकते है यहाँ पर पीछे से बिल्डिंग्स है छोटे छोटे ट्रीज है लगे हुए है।

ब्लैक अँड व्हाइट है यहाँ पर हमे देखने को मिल रहा है की इसमे--

आप देख सकते है छोटे प्लांट्स है ये जो ब्लैक का डोर ये ओपन्ड है आप देख सकते है।

चीजे हमे नजर आ रही है जहां पर हमे ये एक डिपार्ट्मेन्टल स्टोर टाइप है जहां पर हम देख रहे है की यहाँ पर--

बहुत सारी चीजे मौजूद है यहाँ पर एक टेबल भी मौजूद है जो की ये मेरुण कलर का है।

इस पीक मे हमे दिखाई दे रहा है ये एक बेड है।

बैठने के लिए जगह देख सकते है आप कितनी ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने मैनेज किया है।

ये ऑरेंज कलर की बिल्डिंग देखने को मिल रही है आपको जहां पर हमे देखने को मिल रहा है की इधर पे ट्रीज पिछेसे पिछेसे ट्रीज --

इस पीक मे हमे दिखाई दे रहा है की इसमे बहुत सारा अच्छा व्यू आ रहा है।

इस पीक मे हमे दिखाई दे रहा है की इसमे बहुत ही अच्छा व्यू है जहां पर हम देखने को मिल रहा है ये इस लड़किया जिनकी यूनिफ़ॉर्म है रेड और--

जहां पर मुझे देखने को मिल रहा है कन्स्ट्रक्शन इन्होंने लगाया है ये यहाँ पर ये रॉडस् --